अ शादी का दरवाजा दिख रहा है।

एक मेले का फोटो दिख रहा है।

जीसके आस पास घास दिख रहे हैं।

मलमा दिख रहा है रॉड चला रहे हैं।

इस तस्वीर में आपको एक खूबसूरत सा--

एक बड़ा सा ब्रिज दिख रहा है।

लोग बैठे हुए हैं लाइटें जल रही हैं।

पुरान पाक रखा है। पंखे लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक पुराना सा--